इस फोटो में मुझे कपड़ों की दुकान दिखाई दे रही है।

यहां मुझे बाइक दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे टेबील और सोफ़ा दिखाई दे रहे है।

इस फोटो में मुझे बहोत सारे बच्चे दिखाई दे रहे है।

इस फोटो मे मुझे बहोत सारे बैग दिखाई दे रहे है।

इस फोटो में मुझे एक होटल दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे टी_वी दिखाई दे रही है।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

इस फोटो मे मुझे डब्बे दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे रंग बिरंगे पर्दे दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे झूमर दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे माता रानी की मूर्ति दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे बहोत सारी मछलियां दिखाई दे रहीं हैं।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

इस फोटो में मुझे बिजली के खंभे दिखाई दे रहें--